जहां बहुत लोग बैठे हैं।

जहां सफेद कटोरियां पड़ी हैं।

यहाँ एक आदमी जा रहा है।

जहां छोटी छोटी हरी घास लगी है।